बहोत बड़ा ग्राउंड है खेत खलिहान दिख रहा है ।

गाड़ी बना रहा है। टायर है अलबस्टर है।

बहुत सारा लोहा है। साइड में ईट सब है बहुत सा।

इन चारों ओरा यह बहुत बड़ा एल.सी.डी. टाइप का है।

हरा-भरा बहुत सुन घास है बहुत पेड़ है पौधा है हरा-भरा है।